यहाँ पे बहुत सारे आदमी रहते हैं इस घर मे एल.सी.डी. लगी हुए हैं अलमारी है और बरंडा एक गेट है।

यहाँ पे ढोलक बहुत आदमी बजा रहे।

यह एक नदी है। उस नदी मे एक नाव चलती है। यह नाव यहां पे खड़ी है। एक आदमी नाव वाले से पुछ रही है। और यहा --

तालाब में तैरने के लिए स्विमिंग बने हुए है और चारो और से तालाब को घेरा गया है । वह बहुत सारे घर है ।